यहाँ पे एक फैमिली है और आ यहाँ पे कुछ बच्चे और बड़े लोग हैं।

और वो एक तो डांस कर रहे हैं और एक ने टॉप अ यलो टॉप और मिकी माउस का पैंट शर्ट पहना है और थोड़े लोग वीडियो ले रहे हैं।

एक ने रेड टी-शर्ट पहना है एक ने ओरेंज एक ने यलो और एक ने ब्लू और यहाँ पे बहोत सारे स्टोन्स हैं।

ये एक कुछ पैलेस दिख रहा है सुप्रीयो पैलेस करके ये बहुत ब्यूटीफुल है।

ये एक व्यू है एक पानी का व्यू है जहाँ पे शिप हाउस है वहाँ अन्दर छोटे-छोटे कुछ टेबल्स ये सब अरेंज किये हुए हैं और एक स्मॉल बोट है बाजू पे --

यहाँ पे एक बच्चा शायद गा रहा है? और सैफ्रन वाइट ग्रीन है तो कोई अ रिपब्लिक डे ऐसे कुछ सेलिब्रेसन होगा।